मंदिर से हिंदुओ की बहोत आस्था जु --

ये फूल गुलदस्ते की दुकान यहाँ पे बोहोत सारे गुलदस्ते मिलते है।

ये घर दिल्ली का देवरिया का सॉरी --

दूध दही लस्सी जो चाहे आप प्राप्त कर सकते।

कॉमर्स की पढ़ाई कर के बैंकिंग वगेरा सी.ए वगैरा बन सकते हैं। जैसे कि बोहोत सारे --

देखने में बोहोत ही रोमांचिक लग रहा हैं।

यहाँ पे कुछ लोग रडायाम कर रहे रडायाम कर रहे हैं।

बालाजी का मंदिर है। देखिये यहाँ पे बालाजी का मिठाई भी मिलता है। यहाँ बोहोत सारे लोग --

देखिये शादियों का स्टेज सजाया गया है कितने बढ़ियां तरीको से। ये शादी का कुर्सी है।

फोटो लेते हुए दिखाई मालुम पड़ रहे --